बिल्डिंग पा बड़ा-सा और उसके साइड में एक और सफ़ेद बिल्डिंग है कांच की खिड़की लगी है साइड में एक पुरानी सी बिल्डिंग है उसपे दो पेड़ लगे हुए हैं।